और यहाँ पे काफी सस्ते कपड़े मिलते है।

इसके पीछे एक पहाड़ दिखाई दे रहे।

इसके पीछे बहुत सारा घना --

लड्डू भर के रखे गए हैं अगरबत्ती जलाए गए हैं नारियल रखे गए हैं।

यह एक प्रशासनिक भवन है ।